कुछ रेड कलर के कपड़े पहने हैं कोई ग्रीन कोई ब्लू ऐसा ही है।

जहां पे बहोत सारे पेड़ है नारियल के पेड़ है कुछ छोटे छोटे पेड़ शायद कुछ लत्ती वाले पेड़ है।